यहाँ पर एक शॉप है सब्जी की और यहाँ पर बहुत से लोग खड़े हुए है यहाँ पर साइकिल भी खड़ी हुई है बहुत सारी गाड़ी भी खड़ी हुई है।

यहां पे बहुत से लोग एक तीन-चार दुकाने यहां पर दिख रही है सब्जी की भी दिख रही है और कुछ बोक्सेस भी यहां पर रखे हुए है सामने लाइटिंग भी लगी हुई है सामने अलग-अलग दुकानो में अलग-अलग लाइट लगी हुई --

यहाँ पर एक कार खड़ी हुई है और यहाँ पर इसका नंबर प्लेट है वो पीले कलर से आ कलर है और पीछे वाइट कलर की कार भी खड़ी हुई है इसके जस्ट पीछे जो की हाफ फोटो उसका आया है।

पीछे बहुत सारी खंभे दिख रहे हैं जिसमें लाइट के तार भी दिख रहे हैं सामने पल्ले वाला घर भी दिख रहा है और ऊपर एक छत भी दिख रही है छोटी सी और सामने पेड़ कई पेड़ भी दिख रहा है।

और यहाँ पर खंबे भी हैं यहाँ पर दो खंभे दिख रहें हैं जिसमें बहुत सारे तार जा रहें हैं ऊपर कि तरफ से और यहाँ पर रोड भी दिख रहा है पीछे की तरफ बहुत सारे यहाँ पर पेड़ भी दिख र --

यहाँ पर ये बहुत सारे अ कुछ पोहे के पैकेट रखे हुए हैं नीचे के जो फोटो वगैरा भी लगे हुए हैं यहाँ पर बहुत सारे कबबर्ड भी है यहाँ पर बहुत सारा सामान रखा हुआ है नीचे टाइल्स भी लगी हुई हैं और --